यहां पर योगा क्लास चल रही है।

यहां पर बहोत सारे सोफे रखे हुए हैं।

बहोत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है।

यहां पर मैन खड़े हुए हैं।

और इसमें ब्लैक कलर की खिड़की एक गेट है।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

केनी भी धरी हुई है ग्रे कलर कि एक बॉक्स भी धरी हुई है बहुत सारे ऑरेंज कलर के --

मेज पर बहोत सारी बुक्स और डिब्बे धरी हुई हैं।

यहां पर एक मैन भी खड़ा हुआ है।